आ साइड में बाइन्स की बोतल रखी हैं प्लास्टिक मगस दिख रहे हैं।

इस में रेल की पट्टी निकल गई है इसमें भी रेल नहीं है बस ऑनली पट्टी दिख रही है इसके साइड में एक रोड है।

कथै कलर टाइप में दिख रहा--

आ ग्रीन - ग्रीन दिख रहा है एक दम अच्छा लग रहा है पीछे साइड में कुछ चादर साइट है और आसमान एकदम नीलम्बेर जैसा लग रहा है ।

एक रूम है जिसमे डिपार्ट में हाई पोस्ट लिखा है उसपे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ।